ये एक रोड की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर सामने की ओर एक बड़ी सी बिल्डिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी नदी की फोटो दिखाई दे रही है जो की एक बहोत बड़ी नदी नजर आ रही है।

यहां सामने की ओर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे बहोत सारी अलग अलग तरीके के पेड़ पोधै के छोटे छोटे गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी हॉल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे परदों से सजावट करी हुई नजर आ रही है।

गार्डन की दीवार पे बहोत सारे फूलों के पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी पूल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर पूल के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है।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

ये किसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे ऊपर की ओर एक चर्च का निशान बना हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पे ये बड़ी सी नीली कलर की नाव दिखाई दे रही है।

सामने की ओर एक केबिन टाइप का बना हुआ नजर आ रहा है और साइड में कुछ टीन शेड भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जहां ऊपर की ओर एक ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये किसी बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे रही है बिल्डिंग के नीचे की ओर एक चैनल गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

फिश एक्वेरियम में लाइट्स भी जलती हुई दिखाई दे रही है।